यहां दो काउंटर बने हुए हैं।

यहां तीन भगवानों की मूर्तियां रखी हुई दिख रही हैं।

यहां कुछ परदे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक तालाब की तस्वीर है।

तालाब के बीच में भी हरे पौधे उगे हुए हैं।

एक ए_सी भी लगा हुआ है।

यह एक छोटी सी खाई जैसी जगह है।

ऐसा लग रहा है ये चट्टानें काफी फिसलनदार है।

यहां कुछ बास की लकड़ियां दिखाई दे रही है।

यह एक जूलॉजिकल पार्क है।

यह गूगल पे का स्कैनर लगा हुआ है।

कुछ दूरी पर पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां आखड़ा लिखा हुआ दिख रहा है।

एक दरवाजे पर स्टाफ ओनली लिखा हुआ दिख रहा है।

यह एक स्विमिंग पूल का दृश्य है।

दीवार पर कुछ लाल पट्टियां बनी हुई है।

यहां बहुत सारे गमले में पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

सीलिंग पर एक ऐ_सी डक्ट दिखाई दे रहा हैं।

यहां एक सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बनी हुई दिख रही है।

यह एक बहुत ही बड़ा और आलीशान घर है।

यहां एक लड़का तबला बजा रहा है।

बिजली की तार क्रॉस हो रही है।

यह काले रंग के होते हैं इनकी सोच काफी लंबी होती है।

यह दलदली इलाका लग रहा है।